एक पेड़ दिख रहा है।

यहा पर बहुत बड़ी-बड़ी मूर्तिया बनी है | जो बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स --

और उसके पीछे ही बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ है जिसमे हरे-हरे पत्ते लगे हुए है और कुछ लोग ही दिख रहे है।